एक बहुत बड़ी नदी है जो की नीले रंग की दिखई दे रही है यहाँ पे कई सारी ब नाव खड़ी हुई है ।

और कुछ लकड़ी के डंडे भी लगे हुए हैं। साइड में एक लाल रंग का झण्डा भी लगा हुआ है।

उनके ऊपर एक बहुत बढ़िया लोहे की छाया बनी हुई है।

ट्रेन निकल ने वाली जगह लोहे की बनी हुई है लोहे की रेलिंग भी बनी हुई दिखायी दे रही हैं। नीचे कई सारी नाव खड़ी हैं जिनके ऊपर झंडे लगे हुए हैं।

एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जिस जोकी बहुत ही बड़ा बना हुआ है यह सफेद रंग का बना है।